बोहोत ही अच्छे और सुंदर सामान मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और यहाँ पे बोहोत ही कम दाम में इसीलिए लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं खरीदने --

काट के बेच रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे सुंदर मछली मिलते हैं और यहाँ पे बहुत ही दूर-दूर से लोग मछली खरीदने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी सुंदर मछली मिलती है स्वादिष्ट --

पेट्रोल का टंकी भी है और बहुत ही सारा घर भी हैं और यहाँ बहुत ही दूर-दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और बहुत अच्छी सुंदर और स्वच्छ त जगह है जो दिखने में काफी सुंदर और म --

घूमने के लिए आते है और नाव में चहड़ के बहोत दूर-दूर तक क्यूंकि यहाँ कम पैसे में घूमाया जाता है और यहाँ पे बहोत मजे लगते हैं। घू --